ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर लाल पीली हरी --

जहां पर बहोत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे की कटिंग कर कर डिजाइन बनाई हुई दिखाई दे रही है।

और यहां पर बहुत सारी गोल्डन कलर की लाइटों से डेकोरेशन किया हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर तीन बाइके खड़ी हुई दिखाई दे रही है और सामने बालकनी मे एक कूलर रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

किसी कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखाई दे रही है यहां पर बाहर बहोत सारी गाड़ियां --

ये किसी गार्डन की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर छोटे पेड़ों की कटिंग कर कर के डिजाइन बनाई गई है।

और कुछ रेलिंगे भी बंधी हुई है जो भी सूखे पेड़ों से बंधी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर डॉक्टर का नाम उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर एक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर सामने की ओर कुछ दो दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही है जो की झोपड़ी टाइप की बनी हुई दिखाई दे रही है।

बल्ली बंटे लगे हुए हैं और आधी पर हरे कलर के परदे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और उसी बिल्डिंग के बाहर में दो तीन बाइके पे आदमी आते जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

मार्केट में बहोत सारी डेकोरेशन की हुई दिखाई दे रही है यहां पर ऊपर की ओर रेलिंग पे --

यहां पर मैदान में बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है और यहां रेलिंग के पास बहोत सारे आदमी खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कार्यक्रम चलता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर कुछ रंग बिरंगे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

रेस्टोरेंट दिख रहा है यहां पर कुछ बेले भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक बुलेट बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।